यहां पे एक गाय की दवा हो रही है जिसके--

यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ--

बस स्टॉप बना हुआ है जहां पे लोग ठहरते हैं बैठने के लिए बना हुआ है।

बगल में इसके कुछ बना हुआ है चारों साइड यहां पे लाइटिंग वगैरह जल रही है।

यहां पे एक पैलेस बना हुआ है जहां पे लोग जा रहे हैं दो-तीन लोग जा रहे हैं।

और ये पैलेस का गेट है जहां पर काफी अच्छी सजावट की गई है।

पेड़ है जो खजूर जैसा लग रहा है नारियल खजूर जैसा पेड़ लग रहा है।

यहां पे काफी लंबी बड़े एरिया में--

और यहां पे काफी मशीन वगैरह बनाने के लिए छोटे-छोटे सामान डिब्बों में रखा हुआ है यह कार रिपेयरिंग हो रही है।

यहां पे कुछ लोग हैं जो--

टायर पड़े हुए हैं बड़े चका के जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह के--

यहां पे कुछ लोग हैं जो रंग बिरंगे रंगे हुए हैं रंगोली यहां पे--

होली के रंगों में ये लोग रंगे हुए हैं जो कि एक कांधे में कांधे यहां रखकर खड़े हुए हैं।

यहां पे एक आदमी कैमरा लिए यह रोड लाइन का कैमरा है जैसे रोड में सर्वे होता है।

बहुत अच्छी सजावट की गई है यहां पे पिंक कलर का पूरा यहां पे नक्शा लग रहा है।

ये मंदिर या कोई पैलेस से ऐसा लग रहा है।

और यहां पे ऊपर काफी दो-तीन जानवरों का चित्र बनाया गया है।

बगल में इनके एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है और सामने--

यहां पे बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है जहां पे काफी लोग दिख रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है काफी बड़ा गेट है।

यहां पे काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कि फोल्ड किए रखे हुए हैं बड़ी-बड़ी चादरें कामल --

टायर टंगा हुआ है और यहां मशीन है जो हवा भरने की वो पाइप है।

रोड के आगे यहां पे कुछ दिख रहा है बट क्लियर नहीं है क्या है।

और इसके थोड़ा आगे बहुत बड़ा ब्रिज पुल भी बना हुआ है जो कि--

ऊपर से भी वाहन जाएंगे और नीचे से भी वाहन जाएंगे ऐसा रास्ता बनाया गया है रोड है ये--

यहां पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है मोबाइल लिए सामने घर बना हुआ है।

यह सीटें दिख रही हैं बस की लग रही हैं सीटें ये--

दो टू व्हीलर खड़ी हुई है और यहां पे काफी सारा गेट के पास सामान पड़ा हुआ है जैसे ईंट वगैरह है।

काफी सारा कचड़ा पड़ा हुआ है यहां पे चारों साइड यहां पे पेड़ पौधे ही हैं।

यहां मार्केट है मार्केट ऐसा लग रहा है यहां पे--

जो कि ऐसे लग रहा है जैसे बन रहे हो या पेंटिंग हो रहे हो या--

यहां पे कुछ बना हुआ है जो कि मंदिर जैसा लग रहा है सामने से यहां पे गेट लगा हुआ है रेलिंग वाला यहां पे सीढ़ियां हैं।

बाकि ये पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे में फूल हैं पत्तियां हैं हरी हरी ऊपर से तार भी दिखाई दे रही है जो तार गई हुई है।

यहां पे एक काफी सारी मूर्तियां रखी हुई है।

ऊपर से झालर वगैरह भी यहां पे झूल रही है दोनों साइड यहां पे पर्दे भी लगे हुए हैं।

और यहां पे काफी पेड़ हैं काफी सारे पेड़ है यहां पे--

या कोई सफर करने की गाड़ी है जैसे कि--

यहां पे शॉप है जहां पे काफी जेंस की कोटी वगैरह--

शर्ट वगैरह रखे हुए हैं यहां से यहां पे तीन कोटियां दिख रही हैं।

यहां पे प्लांट के पौधे उगाए जा रहे हैं जो कि ऊपर से इन्हें छत डाली गई है।

यह फूल है जो बहुत खूबसूरत फूल खिला हुआ है पौधे में।